यह एक ऑफिस है ऑफिस में दो पंखे लगे तीन पंखे लगे हुए एक--

ये दो बस है जो रोड पे खड़ी है ये दिन की बस कंपनी का नाम दुबे है।

यह एक हिस्टॉरिकल बिल्डिंग की दीवाल है।

ग्राउंड में बहुत सारी कीचड़ भी हो रही है।

पीछे बहुत उबड़-खाबड़ जगह है।

सफ़ेद कलर के उसमे पिलर खड़े हुए है फैक्ट्री है।

अहांगे भूस का ढेर पड़ा हुआ है एक लेयम पड़ी हैं ।

पीछे टिन सैड है बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे है।

यह एक खली ग्राउंड है इस ग्राउंड में पेड़ लगे हुए है।

यह एक मॉल है।